धर सजावट किया हुआ हैं एक टेबल लगा हैं।

जिसमें कोई छोटी और बड़ी मकाने है कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यह पेट्रोल पंप है जिसपे--

यहां बहोत सारे लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं।

बाइक एक खड़ी है एक बोर्ड लगा है ऊपर में एक मंजिला है।